ये बहुत ही अच्छा पार्क में एक घर बना हुआ है पार्क में कुछ बैठने के लिए अंदर--

और जो की दुकान के ऊपर एक टूलेट का बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर कुछ तस्वीरे बनाई गई है जो की एक चर्च की तस्वीर है। जहां पर कुछ लोग आकर बैठे हुए हैं और कुछ कुर्सिया भी यहां पर पड़ी है।

यहां पर फोटो लगी हुई है जोकि तस्वीरों में सैंडविच और बर्गर दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक गाड़ी खड़ी है गाड़ी के सामने कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं।

पब्लिक स्कूल की जो बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है।

तारों का खंबा जो ऊपर से गुजर रहा है बाहो--

बहोत ही बड़े-बड़े पेड़ खड़े हैं उसी के साथ एक --

ये एक बहोत ही अच्छी तस्वीर है। जहां पर की--

टेबलों के साथ टेबलों के ऊपर एक कांच के--

ग्लास भी रखे हुए हैं और लाईटें भी ऊपर जल रही हैं।

यहां पर एक बहोत ही ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है जिसमें की बहोत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं।

अह दिवार के बाहर जो की यहां पर खाली रस्ता है और यहां पर एक झूले रखे हुए हैं झूलो के नीचे एक घास लगी हुई है सामने ही कुछ--

दीवारों पर कुछ बहोत ही अच्छे तरीके से बैनर भी लगाए गए हैं जहां पर--

और जहां पर अ सामने ही सीढ़ियों पर पे ही कुछ लोग बैठे हैं।

यहां पर एक बहुत ही बड़ा सरोवर दिख रहा है जिसमें की--

यहां पर बहुत सारी सीढ़ियां भी बनी हुई हैं जो कि सरोवर के बीच जा रही हैं साथ में इस सरोवर के आस पास में लोग खड़े हैं सरोवर के आस पास में बहुत सारे दरखत भी खड़े हैं।

अ एक बाइक खड़ी है जहां पर एक मोटरसाइकिल खड़ा है मोटरसाइकिल एक बुलेट है जो भी --

और यह एक बाहर बहोत ही बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो की फोर्ड के नाम से--

यह एक पेट्रोल पंप की तस्वीर है जहां प ये बहोत ही--

और जिसमें की बहोत सारे गमले भी रखे हुए हैं।